यहां पर नमकीन भी नजर आ रहा--

यहां पर दसवीं का सामान भी नजर आ रहा है।

यह एक चित्र दिखाई दे रहा है जहां पर एक --

पार्क का मैदान दिखाई दे रहा है यहां पर हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहां पर दुकान के बाहर एक लड़की मोबाइल चला रही यहां पर--

यहां पर हीरो होंडा टी_वी_एस की गाड़ी रिपेयर की जाती है।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

यहां पर नाई कस्टमर के बालों को--

यह एक दीवार नज़र आ रही है यहां एक बिल्डिंग भी नज़र आ रही है।

जहां पर श्री गणेश इंटरप्राइजेज की शॉप दिखाई दे रही --

साथ में एच_डी_एफ_सी का म्युचुअल फंड का ऑफिस भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर सैंसुइ का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

नजर आ रही है यहां पर लेडिस के लिए उचित मात्रा में कपड़े नजर आ रहे --

आ रहा है जहां पर कुछ लोग खाने पीने की चीजें खरीदते हुए नजर आ रहे --